यह एक चित्र है | बोहत ही सुंदर चित्र है | यहां पर बालों की दुकान है |

यह एक यहाँ पर गाड़ी धुल रही हैस्कॉर्पिओ इसको ऊपर टांग दिया गया है।

यहाँ पे कुछ काफी लोग दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर-सुंदर लोग हैं। यहाँ कुछ रिक्शा वाला भी दिख रहा है। काफी लोग --

जूते हाथ में भी पहनेे हुए है पांवो में भी पहनेे हुए है यानी क्या कर रहा है ?

पहाड़ है मिट्टी भी मरकली भी दिखाई दे रही है | एक लड़का फ़ोटू खिंचवा रहा है | ब्लू कलर की टोपी है लाल कलर की टी शर्ट है | उ उसके दाई--

बोहत ही अच्छा चित्र दिख रहा है | यहां कुछ लोग भी बैठे हुए हैं | यहां रजिस्टर भी रखे हुए हैं | यहाँ कुछ समझा रहा--